और इधर कूछ क्लाउड्स वगैरह भी है और बहुत ही अच्छा है और इधर कुछ गाड़ी उडी भी है और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में और उधर भी कुछ क्लाउड्स वगैरह है और यह बहुत ही सुन्दर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ।

यहाँ पे देख सकते हैं ये थ फिटनेस क्लब हैंओर ये बहुत ही अच्छा लग रहा हैंये बाजार हैं ओर ये बहुत ही बढ़िया ओर इधर सोने के टाइप का लग रहा हैंओर ये बहुत ही बढ़िया हैं

और बहुत ही अच्छा लग रहा है और इधर भी कुछ वगेरा टावर उवर भी दिख रहा और इलेक्ट्रिक का तार वगैरा भी हैं।

होटल टाइप का लग रहा है और ये बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही खुबसूरत लग रहा है और इधर फोर व्हीलर भी है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और इधर देख सकते हैं बहुत ही बड़ा बड़ा सीस महल टाइप का लग रहा है और ये होटल है कि क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा |

जिम देख सकते हो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर बहुत ही भारी-भारी डम्बेल्स है और वहाँ पर एक आदमी आया हुआ है।

अभी देख सकते है यह बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है इधर होटल वोटल भी है और यहां पर वगेरा लगा हुआ है और बहुत सारे आदमी सब आए हुए है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा।